लाल अक्षरों हुआ है में फैमिली ब्लू अक्षरों में लिखा हुआ--

यहाँ काले कलर की शर्ट पहनी है कोई ना सफेद कलर की पहनी हरि-हरि बड़े-बड़े पेड़ हैं एक टावर है जो की लोहे का है उसकी बड़ा है नीला आसमान है। सफेद बदल है हरे -हरे--